पीछे पेड़ पौधे और बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं जो काफी सुंदर लग रहे हैं ये बिल्डिंग सफेद रंग की है।

लाल रंग का गेट दिख रहा है और सीढियां लगी हुई है।

ये एक गलियारा लग रहा है जहां पर--

मोहित वेडिंग कार्ड्स यानी शादी का कार्ड की दुकान लग रही है।

यह एक बारात का सीन लग रहा है जो काफी ही सुंदर देश है गुलाबी कपड़े टेंट के कपड़े से सजाया गया है।

ये किसी जगह का खुला मैदान लग रहा है जहां पर इंटरलॉकिंग की सड़क है।

ये एक बोर्ड लगा हुआ है प्रदे दर्शनी बस स्टैंड नगर का कटनी--

एक बुलेट और खड़ी हुई है और एक बुलेट की दुकान के सामने काफी सारे शटर बंद है बंद दुकाने लगी हुई है।

कांच से बनी हुई है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि--

इसकी छत हरे रंग की दिख रही है बगल में एक टीन टब्बल की दुकान सा रखा हुआ है और बगल में दो लोग बैठे हुए हैं।

बोरे में ईट सीमेंट मिलावट कर रहे हैं और मजदूर लगे हुए हैं ऊपर आसमान काफी नीला चमक रहा है नीचे एक खाली मैदान--

ये चर्च सफेद और लाल रंग का बना हुआ है और किनारे बाउंड्री पर सफेद रंग की दीवाल दिख रही है बीच में एक मेंन गेट भी है।

यह एक सोफे का सीन हैं जो सोफा सफेद रंग का है और काले रंग का दिख रहा हैं यहां पर काफी सारे।

बगल में सीढ़ियां भीं जा र ऊपर की ओर जा रहीं हैं जिस पर लाल गमले रखे हुए हैं।

और इसका इस दुकान के काउंटर पर कोई नहीं दिख रहा है और साथ ही यहां पर ये पीले रंग की दीवाल भी बनी हुई है और दीवाल का रंग--